उसके साथ एक व्यक्ति यहां पे शॉल ओढ़ के बैठा हुआ है उसके साथ कुछ तीन चार व्यक्ति और है।

उस मकान के के आगे दो टेबले रखी हुई है और कुछ यहां पर कुर्सियां रखी हुई है।

और नीचे धरी बिछाई हुई है इधर एक मेज है जिसके ऊपर एक कंप्यूटर और एक कॉपी करने का मशीन रखा हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर एक लाल ध्वजा लगाई हुई है इस बिल्डिंग के आगे भी बिल्डिंग बनी हुई है और यहां पे --

और वहां पे काउंटर लगा हुआ है अकाउंट के पीछे कु--

और इधर यहां पर छोटे छोटे पौधे लगे हुए है भाई साहब के पीछे और मंदिर के दूसरे साइड काफी बड़ी संख्या मे पौधे लगे हुए है।

और यहां पानी के नीले ड्रम रखे हुए हैं और यहां दो मजदूर चारपाई में पार्टियों पर काम कर रहे हैं।